यह देहात में मछली पाई जाती है जोरिया में पोखरा में तालाब में--

लगता है कोई मंदिर या फिर ग्राउंड है।